एक जगह पर कुछ छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और दीवारों पर कुछ तस्वीरें भी दिख रही है।

और पास ही मे गांव की कुछ औरतें भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ये एक लड़कों की जाेकेट का मॉल दिखाया गया है जोकि वी टू के नाम से है।

ये एक काफी बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है जिसमें काफी सारी दुकानें दिख रही हैं।

ये एक काफी बड़ा मैदान मालूम होता है। जहां पर बहोत सारे व्यक्ति नजर आ रहे है।

कुछ व्यक्ति जाते हुए नजर आ रहे हैं कुछ व्यक्ति बैठे हुए जमीन पर दिखाई दे रहे हैं।

पास ही में कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं और मैदान में थोड़ी थोड़ी हरी हरी घास भी दिखाई दे रही है।

कुछ डायग्राम या फिर चित्र बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में एक एच_पी गैस एजेंसी दिखाई गई है एच_पी गैस का ऊपर बोर्ड लगा हुआ है।

पीछे की तरफ एक घर भी दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ पौधे भी है।

गुफा बाहर से गोल दिखाई दे रही है और अंदर अंधेरा सा दिखाई दे रहा है।

ये फिसल पट्टी लाल कलर की नजर आ रही है और बच्ची यहां पर बैठी हुई दिखाई दे रही है साथ ही में एक औरत भी दिखाई दे रही है।

ये एक खुशी वैरायटी स्टोर नाम से दुकान दिखाई दे रही है जिसमें प्लास्टिक का काफी सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।